इस चित्र में एक पोस्टर दिख रहा है।

इस चित्र में बड़ा जंगल दिख रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ खर बने दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस चित्र में जू दिख रहा है कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में पेट्रोल पंप दिख रहा है।

टेबल कुर्सी नजर आ रही है कुछ गमले दिख रहे--

इस चित्र में बिरियान रखी दिख रही है कुछ प्लेटें नजर आ रही हैं दो प्लेट चम्मच दिख रही हैं एक बोतल रखी नजर आ रही टिशू पेपर दिखाई दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारी सब्जी दिख रही है पुदीना नजर आ रहा है गाजर नजर आ रही है बेगन नजर आ रहा है मूली ककड़ी शिमला मिर्च करेले नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में जीभ दिख रही है कुछ लोग नजर आ रहा है कुछ घास दिख रही है कच्चा रोड नजर आ रहा है बहुत सारे पैर लगे हुए दिखाई दिख रहे हैं।

इस चित्र में ब्लू ऑटो दिख रहा है व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है कुछ पेड़ दिख रहा है ब्लैक रेलिंग दिख रही है कच्चा रोड दिख रहा है। घास-पुश नजर आ रही है।

इस चित्र मे बहोत सारे लोग दिख रहे है ए_टी_एम नज़र आ रहा है दीवार दिख रही है ठेले दिख रहा है बहोत सारी गाड़ियां दिख रही है एक पोस्टर नज़र आ रहा है।

कुछ लाइट नजर आ रही हैं।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

इस चित्र में दुकान दिख रही है बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में रेस्टोरेंट दिख रहा है।

तालाब दिख रहा है कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारी मशीन दिख रही हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।